यहाँ पास बत्तक है और पेड़ है और मस्त जगह दिख रही और बत्तख भी मस्त दिख रही है और एक है और घुमने भी आ सकते है और--

यहाँ पास चप्पल दुकान है ये लडकियां भी सब देखने जाते है और लइका भी लेने जाता है और और लाइट भी बर रहे है और एकर नंबर दिख रहे--

मस्त कॉलेज है औरत दिख रहे है और पौधे है पेड़ भी और मस्त जगह है और एक तरफ नंबर दिख रहे है मस्त है लाल कलर में बनाये है और पुस्तक भी है मस्त दिख रहे--

और पेड़ है और जहाँ से ज कलर कलर --